यहाँ लोगों को बोहोत फायदा होता है।

यह एक एस.बी.आई. बैंक का ए.टी.एम. है जहां से पैसे निकाले जाते हैं।

और कई प्रकार के यहाँ मिलती हैं और ये बहुत बड़ा शोरूम है।